और इसके इर्द गिर्द पेड़ लगे हुए हैं जो काफ़ी ऊँचे और झंडे भी लहरा रहे हैं जो सफेद और लाल रंग के --

और फिर यहाँ पे दिवार का जो रंग है वो क्रीम है जिस पे डी.ऐन. लिखा हुआ है सफेद रंग से |

एक घर दिख रहा है जो नारंगी रंग का है और हरे रंग का है जिसपे दो टंकी रखी है काले रंग की | एक खबा है जिसपे तार लगे हैं |

जिसके अ जो पली पे बैठा हुआ है वह नीले रंग की है |